उसके नीचे छोटे छोटे ईंटो का कु बनाया हुआ हैं उसके बाजू में एक आदमी एक औरत खड़ा हैं उसके पीछे एक झाड है उसके पीछे बादल दिख रहा है।

ए बड़े झाड़ उसके पीछे एक छोटा सा घर जैसा बना हुआ है उसमें बहु साडे न् झाड़ है। आगे पीछे --

उसके ऊपर एक हाँथ लिखा है बनाया हुआ है। फिर सौ नंबर प्रतिशत लिखा हुआ है। उसके नीचे एक छोटा जाली है। फिर बोहोत सारे झाड़ है। मैदान है।

उसके सामने घर है। उसके सामने बु सारे जड़ है झाड है। आसमान वाईट कलर का दिख रहा है।

इस चित्र में एक नदी है। नदी मे एक नाव है। नाव में दो अदमिया है। एक आदमी इधर बैठा है एक आदमीं उधर बैठा है एक खे रहा है।

इस चित्र में एक जगह दिख री है जगह में कुछ लोग खड़े हुए हैं लाल कलर का छोटा सा घर बनाया हुआ है। इसमें कु --